दिखाई दे रहा है मकान में ओ पी नीले कलर का पैंट हो रहा है वाइट कलर का भी हो रहा है ये उ नीचे रेड कलर हो रहा है कुछ चैना दिखाई दे रहे है रेलिंग भी दिख रही है स्टील की।

खिड़कियां भी दिखाई दे रही है और कुछ लाइट के खंभे भी दिख रहे है और यहां पे दिखाई दे रही है नीचे घास भी दिख रहा है कुछ रास्ता भी दिखाई दे रही छोटी भी दिखाई दे रहा है और ऊपर बादल भी दिख रहा हैं।